कुरकुरे चिप्स जिस जो भी आपको चाहिए वह सब उपलब्ध है कई-कई लोग जैसे कि रासरी है वह खाते हैं तो वह सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध--

तो गाइस यहाँ पर जो भी ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी रुकी हुई है अभी फिलहाल गाड़ी रुकी हुई है धन्यवाद--

और मैं तो इसे जॉइन करने ही वाली हूं गाइस थैंक यू गाइस तो आप सब यहां पर जरूर आएं।

हेलो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग बदक है गाइस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइज --